यहां पर अलमारियों में अलग अलग तरह के केक्स रखें हुए हैं।

यह एक कपड़े कि दुकान है।

पार्क में एक छोटी सी दीवार बनी है।

दृश्य में पीछे की तरफ वृक्ष भी है।

यहां पर कुछ लोग खड़े है।